इस इमेज में जमीन पर कुछ तस्वीरे बनी हुई दिखाई दे रही हैं जिसके आस पास कुछ लोग वाईट साड़ियों में वाईट कपड़ो में दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कुछ बच्चे झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे --